जो की बहुत ही अच्छी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इसमें पांच फ्रेम दिख रहे हैं टोटल ऊपर नीचे जिसमे टोस्ट रखे हुए-- किसी में अलग चीज रखी हुई है पानी की बोटल का रैक दिख रहा है साइड में जहां पर पानी की बोटले रखी--

सामने कोई बैटिंग करने वाला खड़ा हुआ हैं जिसपे बॉल फेकते हुए दिख रहा हैं जो की बहुत ही प्यारा लग रहा हैं।

सामने हमको फर्नीचर दिख रहा है जो की बहुत ही सुंदर लग रहा हैं कांच के अंदर हमको बेट करके दिख रहैं हैं बोल दिख रही हैं नीचे हमको एक टेबल दिख रहा हैं जो की ऑरेंज कलर का दिख रहा हैं।

पत्थरों की बनी हुई दो गुफाऐं दिख रही है। हमको इसमें शेर भी बने हुए दिख रहे हैं आगे की साइड। पीछे हमको पेड़ भी दिख रहे जो कि हरे हरे दिख रहे हैं जोकि बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। हमको हरे हरे खेत भी दिख रहे हैं पीछे जो की बहुत प्यारे लग रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पीछे हमको खुला आसमान दिख रहा है।

खेलने में काम में आते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही अच्छी लग रही है हरी-हरी घास दिख रही है जो की बहुत ही अच्छी दिख रही है यह नकली घास दिख रही है बहुत ही अच्छी घास दिख रही है बहुत ही प्यारी और बढ़िया।

हाथ में दो थालिए दिख रही है जो कि सामने की ओर देखती हुई दिख रही है पीछे हमको दीवार दिख रही है जो कि बहुत अच्छी दिख रही है बहुत ही सुंदर दिख रही है बहुत ही प्यारी दिख रही है।

ग्रे कलर की कार ब रेड कलर की कार व्हाइट कलर की कार दिख रही हैं उपर छत पे लाइटिंग दिख रही हैं जोकि व्हाइट कलर की दिख रही हैं साइड मे हमको एक खोखा दिख रहा हैं जोकि बहोत ही अच्चा दिख रहा हैं पेडल लगा हुआ हैं। जिसपे स्टाइल व्गेरा लिखा हुआ--

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको बहुत सुंदर ह- मॉल जैसा मार्केट दिख रहा है जो कि डेली यूज में जो समान यूज होता है उसका मार्केट दिख रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है।